यहा पर बहोत सारी कुर्सियाँ बहोत सारी खिड़कियां दिख रही है बहोत सारी पंका दिख रहे है यहा पर खिड़की पर पर्दा पर्दा डाला हुआ है|

यहा पर एक मंदिर की तस्वीर दिखाई दे रही हे जहा पर एक नीले कलर की छत दिखाई दे रही हे वाहा पर एक तार लटकती हुई दिखाई दे रही हे नीचे की तरफ बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हे|

यहा पर एक रास्ता दिख रहा हे जिसके साइड चोटी चोटी गाड़िया दिख रही आगे की तरफ एक गेट दिख रहा हे गेट के ऊपर एक लाइट लगाई गई हे उसके आगे भी एक सड़क दिख रही--